modifying the display of content पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे displaysfull content display को मैनेज करना और डिस्प्ले teaser को मैनेज करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर
आप अपने पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
website को खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
अब हमारे पास अपना कंटेंट है देखते हैं कि वास्तव में यह कैसे दिखता है और drupal इसे पेज में कैसे प्रस्तुत करता है
ध्यान दें कि teaser mode में हमें read more के साथ title और body मिलता है
जैसे ही हम नीचे scroll करते हैं हम यहाँ अपने सभी नये कंटेंट को देख सकते हैं
default रूप से बने हुए अंतिम 10 nodes का drupal outputs देता है जो कि homepage पर परिवर्तित हो गए हैं
ध्यान दें यहाँ नीचे कुछ पृष्ठांकन हैपेज 123 next और last
यदि हम last पर click करते हैं तो हम title के बाद read more के साथ teaser mode में nodes की सूची देखेंगे
यह आकर्षक नहीं है
drupal हमें view modes set करने की अनुमति set है
structure पर click करें औऱ फिर content types पर click करें
अब अपने events content type के लिए लेआउट को अपडेट करें
ड्रॉपडाउन पर click करें फिर manage display पर click करें
यहाँ ऊपर ध्यान दें manage display टैब में यहाँ default और teaser है
default default लेआउट है हम एक full view लेआउट जोडेंगे
फिर teaser लेआउट है teaser पर click करें
teaser mode में एकमात्र event description दिखाई दे रहा है और links जो कि read more links है
यहाँ यह दर्शाता है trimmed limit: 600 characters
हम अपने event content type को बेहतर करने हेतु teaser mode बनाने के लिए इन चीजों को अपडेट करेंगे
आगे बढने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि drupal हमें layouts देता है
structure और display modes पर click करें
फिर view modes पर click करें देखें कि form modes भी है
यह form modes data प्रविष्ट करने के लिए layout है
यह view modes data को देखने के लिए layout है
view modes पर click करें
content view mode में हम full content rss search index search results teaser देखते हैं
हम नया content view mode भी mode सकते हैं
महत्वपूर्ण बात यह है किहम key drupal द्वारा the गए चीजों में ही सीमित नहीं हैं
हमारे पास blocks comments taxonomy terms और users भी हैं
हम इनमें से किसी पर भी view modes जोड सकते हैं
कृपया इस चीज का note बनाएँ याद रखने के लिए यह महत्वपूर्ण बात है
ये इनमें से एक हैं जो उपलब्ध हैं लेकिन प्रत्येक content type के लिए सभी सक्षम नहीं है
वापस जाएँ और उसे करें
structure पर जाएँ और content types पर click करें
events content type पर manage display पर click करें
फिर से हम इस पेज पर हैं जहाँ हमारे पास default और teaser है
नीचे scroll करें औऱ custom display settings पर click करें
full content को checkmark करें
यह हमें fields कैसे बाहर रखें यह manipulate करने की अनुमति देता है जब हम वास्तव में एक node पर कार्य कर रहे हैं
save पर click करें
अब यहाँ ऊपर हमारे पास full content और teaser है
अब हम सीखेंगे कि इन दोनों view modes को कैसे अपडेट करना है
पहले full content view को अपडेट करें
हमारे full content लेआउट में ये fields हैं और वे इस क्रम में है और label these दिखाई देता है
वापस चलें और event पर नजर डालते हैं drupalcamp cincinnati पर click करें
body ऊपर है
event website date topics और logo यदि हमारे पास कोई एक है
अब अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए इनको clean करें
structurecontent typesmanage display events और फिर full content पर click करें
यहाँ event description full mode में है
उसे logo के नीचे drag करें
फिर logo से label को hide करें
और इसे original image से medium size में बदलें
यह एक image style है
हम image styles के बारे में विस्तार में सीखेंगे जब हम views में जायेंगे
ध्यान दें कि हम किसी भी image style में किसी भी size के image को बनाने में सक्षम हैं जो हम चाहते हैं
फिर हम इसे कहीं भी उपयोग कर सकते हैं update पर click करें
अब हमारा event logo बाईं ओर होगा क्योंकि यह theme इमैज को बाईं ओर floats करेगा
body इसके आस पास होगा
event date से label inline करें
अब format बदलते हैं
दाईं ओर gear पर click करें हम gear का उपयोग कुछ चीजों को कंफिगर करने के लिए करते हैं
हम इसे default long date में बदलेंगे
update पर click करें यह अच्छा है
event sponsors को inline करें
आप देखेंगे कि output linked to the referenced entity है
इसका मतलब है कि यदि cincinnati user group drupalcamp cincinnati को प्रायोजित करता है तो वो user group page से link होगा
यह ठीक उसी तरह है जैसा हम चाहते हैं
चूंकि event topics एक column में प्रस्तुत है हम above चुनेंगे
फिर से यह referenced entity से linked है
अब कृपया tutorial को रोकें और देखें कि आपकी screen मेरे screen की तरह दिख रही है क्या
save पर click करें
full view mode में अपने एक nodes पर एक नजर डालते हैं
content पर click करें और फिर यहाँ किसी भी event पर click करें
आपके event और text के names मुझसे बहुत ही अलग होंगे
यह इसलिए क्योंकि devel lorem ipsum उपयोग करता है
यहाँ किसी भी event पर click करें
आपको अब layout देखना चाहिए जो कुछ इस तरह दिखता है
यह बहुत ही अच्छा लग रहा है
event website event date event sponsors
यहाँ event topics में एक छोटी सी समस्या है लेकिन उसके लिए हम कुछ css का उपयोग कर सकते हैं
उनका links सही स्थान को इंगित करता है
अपने user group content type के लिए full display को अपडेट करें
structure content types पर click करें औऱ फिर user groups में manage display पर click करें
फिर से हमें अपने views को अपडेट करने की जरूरत है
नीचे scroll करें custom display settings पर click करें और full content चुनें
हम अपनी प्राथमिकता के अनुसार इनमें से किसी भी displays को अपडेट कर सकते हैं save पर click करें
फिर full content चुनें यह उसी के समान है जैसे हमने अपने events के साथ किया था
group website को description और site inline के ऊपर रखें
group contact और email को एक साथ रखें फिर उसके labels को inline करें
मैं email में email link नहीं बल्कि plain text चुनूँगी
यह इसलिए क्योंकि मैं अपने default email program का उपयोग अब किसी और को email करने के लिए नहीं करती
मैं इसे plain text चुनूँगी
group experience level को above रखें क्योंकि यह सभी अनुभवों की सूची है
अंत में events sponsored को above रखें
format को label रखें
हम entity id या rendered entity भी चुन सकते हैं
लेकिन ऐसा करने पर हम यहाँ event pages के पूरे समूह के साथ समाप्त करेंगे
मैं इसे label रखूँगी
यहाँ link to the referenced entity है
इसका उपयोग करके cincinnati user group में drupalcamp cincinnati पर जाने के लिए हम link पर click कर सकते हैं
save पर click करें और देखे कि हमने क्या किया है
content पर click करें और सूची में user group पर click करें
यहाँ हमारे पास group website description contact information है यह devel द्वारा बनाया गया है
contact emailयह नकली आईडी है जो कि devel द्वारा बनाई गई है
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य कर रहा है
यहाँ group experience level है ध्यान दें कि devel ने कुछ double selected किया है
अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे
अंत में event sponsored drupalcamp cincinnati है
यह लेआउट काफी बेहतर है जिसे हम किसी भी display या layout modules जोड़े बिना प्राप्त कर सकते हैं
हमने full content सफलतापूर्वक किया है
अब अपने teaser modes को अपडेट करना सीखते हैं यदि आप इन दोनों पर नजर डालें तो वे खराब नहीं है
लेकिन जैसे ही आप नीचे scroll करते हैं हमारा teaser modes बहुत अच्छा नहीं है
हम इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं
structure और content types पर click करें
events में manage display पर click करें फिर teaser पर click करें
drupal हमें links और event description देता है जो कि body field है
अब इसके लिए अपना teaser mode अपडेट करते हैं
event website को ऊपर drag करें और inline चुनें
फिर event date को ऊपर drag करें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है
फिर event logo drag करें और इसे ऊपर रखें
हम label को hide करेंगे औऱ thumbnail से format बदलेंगे
हम अपनी site पर किसी भी image के लिए image styles बना सकते हैं
लेकिन हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे
link image को content में बदलें
यह सीधे ही कंटेंट आइटम में link के रूप में logo बनाता है अब update पर click करें
हमारे पास logo website औऱ date है
links को नीचे drag करें
अब event description की कांटछाँट करते हैं
gear पर click करें और इसे 400 characters में बदलें
update पर click करें फिर dropdown पर click करें और trimmed option चुनें
अब हमारा teaser mode ऐसा होना चाहिए logo बाईं ओर website date और links के साथ description दाईं ओऱ
देखते हैं कि यह अब कैसे दिखता है save पर click करें
site पर वापस जाएँ
आप देखेंगे कि drupalcamp cincinnati अपडेट हो गया है
हम date field को बाद में अपडेट करेंगे
आप देखेंगे कि body की छंटनी हो गई है
structure पर click करें content types events manage display और teaser पर click करें
event date को छोडकर इनमें से अधिकाश ठीक है time ago के बजाय हम custom चुनेंगे
यहाँ ध्यान दें यहाँ date formats के लिए php documentation link है
अब datetime format अपडेट करते हैं
सबसे पहले उन्हे डिलीट करें
lowercase l comma capital f js comma और capital y
इसका अर्थ है कि day of the week day of the month
और फिर उचित suffixst nd rd th और चार अंको का वर्ष
update पर click करें
अब हम यहाँ date के preview को देख सकते हैं
save पर click करें
अभी के लिए event description को hide करें
save पर click करें
अपनी site पर एक नजर डालें
अब हमारे event के लिए हमारे teaser को यहाँ देखा जा सकता हैtitle logo website और event date
अब अपने user groups के लिए teaser mode को अपडेट करें
structure content types पर click करें और फिर user groups में manage display पर click करें
फिर teaser पर click करें
यह थोडा सा अलग है क्योंकि हमारे पास कोई भी इमैज नहीं है
हमारे पास user group logo हो सकता है
user group website को ऊपर रखें
हम user group description प्रदर्शित नहीं करेंगे
अब group contact email रखें
और group website और contact email का label inline करें
यहाँ फिर से मैं format को plain text रखूँगी क्योंकि मैं अपनी default email उपयोग नहीं करना चाहती
यह बहुत ही सरल teaser mode है
save पर click करें
अपनी site पर वापस जाएँ
cincinnati user group में read more के साथ group website और contact email है
यही कारण है कि हमने full content और teaser mode दोनों के लिए view modes अपडेट किया है
बाद के tutorials में हम अपने landing पेज पर जायेंगे और अपने कंटेंट को उपयोगी रूप देंगे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
इस tutorial में हमने सीखा displays full content display को मैनेज करना और display teaser को मैनेज करना
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद